बहुत सारे लोग है जो --

उम्म किराने की दुकान के अंदर एक टेबल रखी हुई है।

हॉल के अंदर बोहोत ही सुंदर लाइट जल रहीं हैं।